मूर्ति की फोटो लगाया हुआ है और एक व्यक्ति सोफे पर बैठा है सफेद कपड़ो में ट्रैक्टर चलाने वाला भी सफेद कपड़ो में पीछे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं हरियाली भी काफी है।

न बाइक वगैरा भी है जो कि आगे काफी खड़ी है।

वीडियो काफी अच्छा अ फोटो काफी अच्छा और शानदार दिखाई दे रहा है खाने पीने के टेबल्स भी काफी अच्छे से लगा के रखी हुई है।

इस फोटो में दुर्गा पंजाबी ढाबा नाम दिखाई दे रहा है और काफी सारी चेयर वगैरह भी दिखाई दे रही हैं एक व्यक्ति है जो चेयर पर बैठा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ प्रोग्राम वगैरा कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इसकी वजह से काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है।

इस फोटो में काफी सारी ओ पैर साफ वगैरा घर में लगाने के लिए लगाई जाती है जिससे घर में अंदर जो --

कुछ बाइक और स्कूटी भी पास में खड़ी है परिवहन भवन करके नाम दिखाई दे रहा है।

मोटर्स वगैरह मशीन वगैरह और जो कि अलग अलग खांचों में डाल कर अह एक के ऊपर एक जंचा कर रखी गई है।

इस फोटो में ग्राउंड दिखाई दे रहा है और कुछ काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो हल्ला करते नजर आ रहे हैं।

बहोत ही दूर से लिया गया मार्शल आर्ट की कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है फोटो काफी खूबसूरत है ऊपर काफी लाइटिंग ज्यादा दिखाई दे रही है आसमान में काफी साफ है।

पेंटोल वगैरह भी काफी कुछ बहोत ही दूर से फोटो लिया गया है दिखने मे काफी अलग दिखाई दे रहा है।

इंप्रोपर टेस्ट करके ना प्रॉपर्टीज करके नाम लिखा है आगे कुछ अंदर की ओर सिंगल लाइन में लाइटे लगाई गई है जो की --

इस फोटो में काफी सारे अलग प्रकार की सामान वगैरा दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ--

यहां आ के लकड़ियों के कुछ आइटम बनाए गए हैं और कुछ लोग खरीदने के लिए आए हैं और कुछ --

फोटो दिखाई दे रही है जो की लाल कलर की काफी आकृतियां बड़ी है वाइट कलर से रंगोली बनाई गई है देखने में काफी अच्छा और शानदार --